मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा सा फैक्ट्री जैसा रूम दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर है।

और दूर दूर में मुझे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे वहां पर एक छोटा सा नाल भी दिखाई दे रहा है।

फर्नीचर्स जैसे से बड़ा बड़ा अलमारी हो गया टेबल हो गया चेयर हो गया।

और मुझे यहां बहोत सारे भी दिख रहे हैं और मुझे यहां पर एक स्विच बॉक्स भी दिख रहा है।

ये बहुत सारे फल बेच रहे हैं।

वहां पर मुझे एक बहोत बड़ा कंटेनर दिख रहा है जिसके अंदर बहोत सारे खाने पीने की चीज हैं।

मुझे यहां पर एक बहुत सुंदर सा जगह दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे बाइक और गाड़ियां हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है जहां पर एक बिल्डिंग है बहुत बड़ा सा बिल्डिंग ।

और यहां पर मुझे बहुत सारा पाइप जैसा भी दिखाई दे रहा है सड़क भी थोड़ा गिला है और मुझे फ्लैक्स भी दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत अलग अलग टाइप का समान है । कार्टून भी है। यहां में कलर का बकेट भी है।

मुझे एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पे तीन चेयर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं एक क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है।